यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ लोगो को जमीन पर बैठे हुए हैं जो कि स्टूल लगाकर बेठे हुए हैं और इधर-उधर एक दूसरे को देखते हुए अ सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। सब्जी में जैसे उनके पास कुछ पत्ती जैसा कुछ है जो कि शायद वो बचने के लिए ही बैठे हुए हैं।

यहाँ हमें देखने को मिल रहा है अ बोहोत सारी चेयर्स स्टील की जो कि पूरे लाइन से लगी हुई हैं। पूरे उस हॉल में फैली हुई है। फर्श देखने को मिल रहा है जो कि --

पिच्चर में हम देख सकते हैं एक अ किसी श अअअ ग्लास क गेट को जहां पर दो लोग खड़े है। एक आदमी पीछे कि ओर देख रहा है और दूसरा आदमी आगे की ओर देखते हुए हेलमेट हाथ मे लिए नज़र आ रहा है।

इसमे हम देख सकते हैं। बहुत सारा पानी है किनारे पे ब भरा पड़ा है और दू कुछ लोग भी हमें पीछे की तरफ देखने मे को मिल रहे हैं। एक रास्ता है जो की पानी की ओर लेकर जा रहा है।

नीचे की तरफ हम एक रास्ते को देख पा रहे है जिसमें एक आदमी बाइक वाला सामान लादे हुए अपने बाइक पे आगे की तरफ जा --

कुछ लडको है और पीछे की तरफ उनके काफी बढ़िया सा कैफे है बोहोत ही ब्लैक उसका बैकग्राउंड है और अंदर की तरफ ग्रीनरी जैसा कुछ ह। ।

देख सकते हैं एक टेंट हाउस को और टेंट हाउस मतलब जैसा टेंट हाउस का एंट्री गेट है ये। जहाँ पर बहुत सी डिज़ाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। डिजाइनिंग पर्पस मतलब कपड़ो के यहाँ पे अ --

यहां पर हम देख पा रहे हैं अ कुछ पानी को पानी से भरे एक जगह को अ पूरी जगह पे सीमेंट के कुछ बॉक्सिस जैसे बना रखे हैं।

देख पा रहे हैं रोड को रोड पे चलती हुई एक मुस्लिम महिला को और एक हिन्दू महिला को भी देख पा रहा है वहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहां पे --